और व्हाइट धारी-धारी जैसा है।

शादी का माहौल है। शादी का माहौल है सजावट है। उसमे फुल बनाया हुआ है।

पानी का झरना है। नीला वाला शर्ट पहनले है। दू गो तीनगो चारगो लड़का है। सब नहा रहा है।

गाछ-वृक्ष भी है पहाड़ है।